यहां पर बहोत से लोग दिखाएं दे रहे हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है और कुछ आसमान दिखाई--

दे रही है जहां पर बहुत से बैनर्स दिखाई--

एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।